यहाँ कुछ नोनीहाल छन दिखेण लग्यां जू दिखेण से लग्दु अपनी सेल्फी छन खींचण लग्यां पिछाड़ी फणा हम तैं कुछ डालों का फुंगणा-फांगणा भी दिखेण लग्यां।

और पोर हम्थे बड़ा-बड़ा ढूँगा का पहाड़ जैसा दिख्याणा लाग्यां यख हम्थे कुछ कछील भी च दिख्येण लग्युं पैथर कुछ छोटी-छोटी डाली भी छिन दिख्येणी।

जफणा हमते कुछ डब्बा भी दिखेण लगयां जूं पर बिस्कुट छा रख्यां अर भैर बिटि मेज छ दिखेण लगी जमना हमते कुछ बोतली अर कुछ गिलास छन दिखेण लगयां।

ये चित्र में हम्थे एक सड़क सी च दिख्याणी लगीं जेँका ऐंच हम्थे बहुत सारा गाडी वाला च दिखयाणा लाग्यां और पोर हम्थे कुछ लोग च दिखयाणा लाग्यां।

गाड़ी हम त ये रैलिंग कर दिखेण लगीं जैका अगाड़ी एक बड़ी नदी दिखेण लगीं जैका किनारा कुनारा हम त बहोत सारा डाला डुला दिखेण लग्याँ कुड़ा छिन दिखेण लग्याँ एंड ड्यूरु भी साफ़ छिन दिखेण लग्यूं।

उं का ही किनारा फणा हम तें और लोगन दिखेण लग्यां जो बिटि हम तें एक लाखड़ा कू डंडा कर दिखेण लग्युं जु दिखेण सी क्रिस्टियन कु निशान च लगणू।